जहाँ किसी का शादी हो रहा है। ईशा चर्च में बहुत सारी कैंडल्स जलाई गयी हैं और साथ ही बहुत सारे व्यक्ति आए हैं। शादी में और शादी के शुभ अवसर पर यहाँ बहुत सारे कैंडल्स भी जलाये ग --

बहुत ही कम समय में अधिक काम करने में सक्षम है जिसके मदद से बहुत सारे कार्य ये मर्ज मजदूर करते हैं।

सारी सीटें हैं। यह बस के ड्राईवर बोहोत ही अच्छे हैं। यह बस बोहोत दूर-दूर तक जात --

यहाँ बहुत दूर- दूर से झूले झूलने के लिये इस पार्क में आते है इस पार्क में टिकट काउंटर साइड में रखा गया है जोकि बहुत ही अच्छा हैं।

यहाँ संगीत समारोह हो रहा है। यहाँ बहुत सारे व्यक्ति संगीत जैसे वीना वीना और अन्य उपकरन बजा रहे हैं जिससे बहुत ही सुरीली संगीत आ आ का आनंद लेते हुए सभी लोग आ आ अम --